और यहां पर सफेद रंग की बोरियां भी रखी गई हैं।

और ऊपर लिखा गया है कार वॉश --

दिखाई दिया गया है कि यहां बहुत से गमले हैं।

इस दृश्य में हमें यह दिखाई दिया गया है कि यहां पर एक घर है।

और इसके पास एक केले का वृक्ष भी हैं और एक--

की बहोत ही सुंदर है और बहुत--

डाली हुई हैं और वे लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं।

दृश्य में हमें यह दिखाई दिया गया है कि--

इस दृश्य में आपको यह दिखाई दिया जा रहा है कि--

दृश्य में आपको यह दिखाई दे रहा होगा--

यह दिखाई दिया जा रहा होगा।

जो की अलग अलग रंग की है।

और वहां पर एक शीशा भी लगा है।